पावेल का पानी बहुत तेज गति से बह रहा है यह काले पत्थल लगे हुए है जिनके बिच से झरना --

बहता हुआ दिखाई दे रहा है पीछे कुछ हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है जो चट्टानों के बिच से निकल रहे है तथा पानी में चट्टानों के बिच से निकल रहा है।

तालाब मे नाव है नाव आसमानी और सफ़ेद रंग की है।

यहाँ पर पहाड़ ऊँचे पर्वत है तथा यहाँ पर बदलो का रंग सफ़ेद और साफ़ है।

कुंवर लिखा हुआ है यहाँ पर एक वव्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने काले रंग के कपडे पहन रखे है यहाँ पर एक ऑटो खड़ा है जिस पर हम पीला और --

त कही-कही पर हरी-हरी घाँस दिखाई दे रही है ईमारत का रंग सफ़ेद और पीला है पीछे पेड़ लगे हुए है पेड़ो का रंग हरा है।

काला है यहाँ पर कुछ सजावट भी दिखाई दे रही है जो झंडियों द्वारा की गई हैं एक बोर्ड लगा है जो सफ़ेद और आसमानी रंग का है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है जहा पर बहुत सारे वाहन खड़े है सफ़ेद और काले रंग के --